बड़ी कंपनी दिखाई दे रही है यहां बहोत से आदमी भी बैठे हुए है।

एक लड़का अपनी वीडियो बना रहा है और अपने घर पे खड़ा है।

यह खेत में सब्जी बो रखी है पालक मेथी धनिया बथुआ--

यहां गाड़ी घोड़े ठीक होते हैं जैसे मोटरसाइकल स्कूटरी गाड़ियां यहां ठीक होती--

गंडासा चाकी ऐसी दुकाने है।

ये किसी चीज की कंपनी है बहुत सारे सरिए से लगे हुए हैं।

यहां बहोत बड़ी है नजारा--

और पीछे बहोत से आदमी कम कर रहे हैं।

इंग्लिश में तीन चार जगह लिख रखा है और बड़ा पाइप भी लगा हुआ है।

और बड़े बड़े ठंडे से भी नजर आ रहे हैं और यहां और सामान भी बहुत सारा--